शीशा भी दिख रहा है दीवार वाली घड़ी दिख रही है वहां पे कुछ क्रीमें सपरे दिख रहा है ड्रायर दिख रहा है।

वहां पर हरे रंग के दो बेंच दिख रहे हैं।

एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और वहां पर फूल भी लगे हुए दिख रहे हैं।

अंदर रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा है।

मुझे बहोत ही सुंदर फूलों से सजाया हुआ एक बिल्डिंग दिख रहा हैं।

और फूलदान बहुत सारे गुलदस्ते एक टेबल टेबल के ऊपर टेबल फैन --

वाशिंग मशीन कुछ कूड़दान रखे हुए है दीवारों पे कु--

बिल्डिंग के नीचे लगे हुए है बिल्डिंग सारी पत्थर की बनी हुई है।

लाल रंग की बिल्डिंग दिख रही हैं बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां भी लगी हैं।